कप रखे हुए हैं खिलौने हैं और टिपन है थरमस है।

यहां एक होटल है और एक मंदिर है।

और साइड में भी हैं और दो खंबे लगे हुए हैं।

इस रूम के अंदर दो अंब्रेला रखें हुए हैं।

और एक डिजाइन साइड में रखा हुआ है।

और एक विंडो लगी हुई है पंखा है और साइड में कुछ सामान है।

बोर्ड लगा हुआ है और एक एल_ई_डी भी है और--

यह एक होटल है और इसके अंदर कुर्सियां मेज रखी हुई हैं।

यह एक चाय सेंटर है यहां दो आदमी खड़े हुए हैं जो की समान ले रहे हैं कुछ कुरकुरे टंगे हुए हैं और कुछ समान रखा हुआ है।

यह एक फलों की दुकान है जिसमें मौसमी में रखी हुई है अनार रखे हुए हैं।

साइड में कुछ पेड़ है।

और एक व्यक्ति है जो कि बना कर दे रहा है और साइड में एक स्कूटी खड़ी हुई है।

इसमे कुछ भगवानो की तस्वीर रखी हुई है।

यह एक हॉल है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है कुछ रेड कलर का है कुछ येलो कलर का है।

कुछ बच्चों के लिए खिलौने हैं और बच्चों के लिए साइकिल है।

यह एक क्लास रूम है इसमें बहुत सारी मेजे रखी हुई हैं।

और एक बॉक्स का रखा हुआ है एक छप्पर है।

यह एक पार्क है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।